एक बुड्ढा यहां पे काम कर रहा है।

इस फोटो में घर बन रहा है।

दो बाल्टी रखी हुई है नीचे एक डिब्बा रखा हुआ है और यहां पे और सामान पड़ा हुआ है।

नीचे बैग रखें हुये हैं बैग के अन्दर बुक रखी हुई है।

इस फोटो में एक स्टेज लग रही है।

इस फोटो में एक हॉस्पिटल दिख रहा है।

इस फोटो में एक लाल कलर का घर दिख रहा है।

इस फोटो में पहाड़ दिख रही है।

यहां पे हरा मैट बिछ रहा है।

दूसरी साइड में कुर्सी रखी हुई है।

मे संधू वैष्णो पंजाब ढाबा लिख रहा है।

बाहर नीला गेट लग रहा है।

अरे एक और बोतल छप रही है पोस्टर पे--

एक सड़क दिख रही है जिसमें कुछ आदमी पल्ली साइड को जा रहे हैं।

स्टूल के ऊपर दो डिब्बी रखी हुई है एक सफेद कलर की एक लाल कलर की।

बाहर एक आदमी जा रहा है एक गाड़ी खड़ी हुई है।

इस फोटो में भारतीय स्टेट बैंक दिख रहा है।

इस फोटो में एक मैरिज हॉल दिख रहा है।

मैरिज हॉल में बहुत अच्छे डेकोरेट कर रखी है।

और वो सामने लाल कलर से डेकोरेशन हो रही है जिसके ऊपर फूल लग रहे हैं।

इस फोटो में जिम दिख रही है।

यहाँ पे एक बहुत मोटा पत्थर पड़ा हुआ है।

और में बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं।

इसमें भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति भी है।

इस फोटो में एक बैंक्वेट हॉल है।

नीचे एक दो घड़ी रख रही है।

इस फोटो में कॉफी शॉप दिखाई दे रही है।

ऊपर एक टंकी रखी हुई है।

इसके ऊपर समान ल रखा हुआ है और केबिल दिख रहा है।

सोफे के ऊपर तकिये रखे हुए हैं।

वहां पे संतरी बैलून लगे हुए हैं।

शीशे की खिड़कियां बनी हुई है उसके अंदर सामान रखा हुआ है।

साइड में एक और दुकान है जिसका शटर खुल रहा है।

और ऊपर झल्लर लग रही है उसके ऊपर उर्दू में कुछ लिख रहा है।

और एक वहां पे स्टूल रखा हुआ है।

और एक नीली पन्नी टंग रही है बाहर पाइप रखे हुए हैं बाहर एक नाल लग रही है लोहे की।

दीवार पर सफेद कलर का हो रहा है और गुलाबी कलर हो रहा है।

ऊपर सौर ऊर्जा की प्लेट लग रही है नीचे भी खिड़कियां लग रही है दो गेट दिख रही है।

इस फोटो में दलदल दिख रही है।

कुछ शीश एक शीशा सफेद कलर का है।

एक पे चॉकलेटी और सफेद कलर हो रहा है।

एक प ब्लैक और सिंधूरी कलर हो रहा है।

शीशे के ऊपर एक सफेद पर्ची लगी हुई है।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

नीचे एक पी फरस पर एक कला कुछ रखा हुआ है एक केबिल रखा हुआ है।